यहां पर हमें एक इमारत का दृश्य दिख रहा है दीवार पर कुछ सुंदर तस्वीरें बनी हुई हम देख सकते हैं।

एक नीले रंग के बोर्ड पर बिरसा रेलवे स्टेशन सिरसा रांची लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एक एयर कंडीशन लगा हुआ है देख सकते हैं।

जो एक आइस क्रीम का दुकान नजर आ रहा है।

यहां पर एक नीले रंग का कचड़े का डब्बा दिखाई दे रहा है।

एक पीले रंग का लंबा पाइप नजर आ रहा है।

युवक पौधों पर पानी पटाता हुआ नजर आ रहा है।

सीलिंग पर कुछ लाइट्स लगी हुई नजर आ रही है।

यहां पर दो लोहे की पोल दिखाती है।

यहां पे अमरूद सेब केले और तरबुजे जैसे चीज रखे हुए है।

यहां पर तीन पीतल के बहोत सुंदर सुंदर स्टैंड जैसा सामान रखा हुआ है।

माला लगे हुए दिख रहे हैं।

यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए हम देख सकते हैं एक बड़ा सा जे_सी_बी कुछ खोदते हुए नजर आ रहा है।

झालर लगे हुए नजर आ रहे--

पर पानी का बोतल रखा गया है।

यहां पे काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

झंडा लगा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर सामान रखने के लिए कार्ड गाड़ी दिख रही है।

एक बिल्डिंग का दृश्य है यहां पर एक सुंदर अक्षरों में होटल अक्ष दीप लिखा हुआ दिख रहा है।

ऊपर हमें सेंट्रलाइज ए_सी दिखाई दे रही है।

एवं एक बहुत सुंदर आसमान का दृश्य है यहां पर सूर्य ढल रहा है।

बाउंड्री के बगल में हरी हरी घास उगी हुई नजर आ रही है।

उस पे कई सारे लोग बैठे हुए यहां दिख रहे हैं।

पर एक पेट्रोल पंप का दृश्य दिख रहा है।

एयर एक्साटर दिखाई दे रहा है।

यह एक चर्च का दृश्य है यहां पर बहुत सारे बच्चे एक झंडे को पकड़े हुए खड़े हैं।

यहां पर कुछ कैंडल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे जीसस जीसस क्राइस्ट का मूर्ति का फोटो लगा हुआ है।